मुझे के तरफ कुछ बिल्डिंग सी नज़र आ रही है और हर एक बिल्डिंग सी नज़र आ रही है ऊपर के तरफ कई बोर्ड नज़र आ रहे है मुझे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा हुआ नज़र आ रहा है। .>

बड़ा सा गार्डन जैसा नजर आ रहा है। बड़ा बड़ा आ रहा हैं।

एक तरह से गार्डन नजर आरहा है ।कुछ लोहे के बने हुए ढांचे नजर आरहे है। बिच में एक बड़ा सा पेड़ नजर आरहा है। उसकी राइट साइड में सामिट की बनि हुई--

चाय की तरफ मुझे एक कपडे की शॉप नज़र आ रही है। उसके साइड के तरफ मुझे कुछ पेड़ नज़र आ रहे है। और ऊपर के तरफ का मौसम काफी साफ़ नज़र आ रहा है। और कुछ इलेक्ट्रिसिटी के वायर नज़र आ रहे है।

इसी के साथ मेरे सामने के तरफ एक लड़का नज़र आरहा है और इसी के साथ मुझे एक रस्सी बाँधी नज़र आरही है जो के जिस के ऊपर मुझे कुछ कपडे नज़र आरहे हैनॉइस.